इस दृश्य में एक मैदान का चित्र है।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें बालूरघाट एयरपोर्ट लिखा हुआ है।

एक आदमी येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ खड़ा है।

इस दृश्य में एक फंक्शन का चित्र है।

यह आदमी शर्ट और पैंट पहना हुआ है और गमछा टंगा हुआ है।

इस दृश्य में एक स्टेशनरी दुकान का चित्र है।

इसमें बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक दुकान का चित्र है।

इसमें बस खड़ा किया हुआ है।

इस दृश्य में एक मैरिज हॉल का चित्र है।

इस दृश्य में एक टॉप फ्लोर का चित्र है।

इस बोर्ड में चेन्नई किचन वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट का चित्र है इस रेस्टोरेंट में टेबल और चेयर लगा हुआ नजर आ रहा है।

टेबल के ऊपर टिशूज पेपर रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक सर्विस दुकान का चित्र है।

और रास्ते में कुछ बैग जा भी रहा है।

और कुछ आदमी लोग बैठे है और साइड में बहुत बड़े - बड़े बिल्डिंग बने हुए है।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

एक दो आदमी डॉग भी हैं।

इस रोड के साइड में एक एंबुलेंस खड़ा किया हुआ है और कुछ बाइक भी खड़ा किया हुआ है।

एक ट्रांसफार्मा भी लगा हुआ है।